यहां पर बिल्डिंगे भी दिख रही हैं।

एक चॉकलेटी रंग का गेट है।

शटर हैं शटर खुला हुआ है।

ये छरकी दादरी का रेलवे स्टेशन है।

प्लेटफार्म पर रखी चेयर्स है और कुछ आदमिया ठहरे और बैठे --

रंग की बड़ी बिल्डिंगे हैं।

उनके बच्चों के हाथ में एक दिया है।

आर_ओ का रंग सफेद है और एक कार --

और इनके शेल्फ में पेपर मुदड़ कर भी रखे हुए है।

और यहां पर ऊपर की थोड़ी सीलिंग दिख रही--

किराने दुकान में फ्रिज है।

का शेड भी दिख रहा हैं छोटे-छोटे हरे झाड हैं।

और दूसरे फ्लोर पे बिस्किट के पाकिटा हैं।

यहां पर नदी में के पत्थर दिख रहे हैं।

ऊपर खुला आसमान दिख रहा है।

गार्डन के बहोत सारे झाड़ है।

हैंस की रंग सफेद कलर की है।

यहां पर बहोत बड़ी मशीन भी रखी गई है।

कुछ आदमियां रेती सीमेंट मिलाकर काम कर रहे हैं।

पीछे एक गेट है लोहे का नीचे जमीन दिख रही है।

यहां पर चावल की चूड़ियां भी दिख रही है।

ऊपर भी लगाए गए है नीचे भी लगाए गए--

रोड के किनारो पर बुलडोज़रें है और उन पर क्रेन है।